यहाँ पर हमें मछली का बाजार दिखाई दे रहा है दो तीन दुकाने लगी हुई दिख रही है।

नीली पन्नी पे मछलियाँ रखी दिख रहीं हैं कुछ मछलियाँ ब्लैक हैं कुछ मछलियाँ वाइट हैं और बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं दो लेडियाँ येलो कलर की साड़ी पहने हुए हैं वो मछलियों को देख रहीं हैं।

और ये आदमी तीन आदमी दिख रहा है ब्लैक कलर का।

वहाँ बहुत सिढियाँ दिखाई दे रही है ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है दोनों साइड मे गोल गोल कुछ डिजाइन बनी हुई एक सी --

यहाँ पर हमे सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है विगन बुक सेंटर स्टेशनरी ।

और हमे सामने मिरर दिखाई दे रहा है मिरर में हमे बैठे हुए आदमी का प्रतिबिम्ब भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमे मछली की दुकान दिखाई दे रही है बहुत सारी मछली स्टूल पी रखी दिखाई दे रही है मछली बड़ी बड़ी है सफेद कलर की है।

इस इमेज मै हमें एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है उसके तीनों चारों तरफ कुर्सियों पे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही है टेबुल रखी हुई दिख रही है दो कुर्सियों और टेबुल पर दो लेडीया बैठी हुई है एक पर कोई लेडी बैठी हुइ है।

यहाँ पर हमें एक आदमी सामने चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो मोबाइल रखे हुए है हाथ में और उस मोबाइल को देख रहा है।

यहाँ पर हमे एक ठेले में मछली रखी हुई दिखाई दे रही है यह मछली बहोत बड़ी है और इसको सभी आदमी देख रहे है एक आदमी इसकी केमरे में --

बस के ऊपर ही बोहोत सारे आदमी चढ़के खड़े हुए दिख रहे है और निचे रोड पर भी है बोहोत सारे आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है जो हाथ मे झोला झोली रखे हुए है।